जिसमें बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं जिसमें पार्लेजी और मैगी और बहुत सारी चॉक्लेट्स रखी हैं।

इस फोटो में बहोत सारे मक्का के भुट्टा रखे हुए हैं।

यह एक चॉक्लेट केक है।

यह एक रूम की फोटो है।

मॉल है जिसमें बहुत सारी चीजें रखी हुयी हैं।

जिसमें बहुत सारी लीची रखी हुई हैं।

यह गाय दो कलर की है।